उनकी दीवाल सा दीवार सामने दिख रही है उसपे चित्र बने हुए हैं महल का।

यहां बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

और फूल भी है और रेलिंग है लगी हुई जिना पे।

यहां एक सामने बना हुआ एक चीज दिखाई दे रही है जिसपे बोर्ड लगा हुआ है।